कुछ बोतलें हैं जो सफ़ेद कलर की हैं एक सेनीटाईजर बोतल है जिस पर लाइफबॉय लिखा --

उसके अलावा वो उसका कलरफुल है और जी.पी. प्लेज़र लिखा हुआ है। उसपे डिजाईन बनी हुई है। खम्भे बने हैं।

कपड़े टी-शर्ट पहन रखी है बालकों ने खम्भे हैं।

गुलाबी कलर की है और नीचे केरोटोन रखे हुए है जिनमे --

पहाड़ हे उसके अलावा एक ब्रिग हे जिसपे गाड़ी जा रही है और --

ये जो इसने लाल शर्ट पहन रखा है जो खड़ा है।